उसके ऊपर ही सामने कुछ घर से बने हुए है जोकि घर के बाहर की ये एक सीढ़ियां जोकि बहोत ही अच्छे तरीके से--

की तरफ एक एक्टिवा भी खड़ी है।

ये एक एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर जहां पर इंडिगो के--

बहोत ही अच्छे से बैठने के लिए जगह बनाई गई है जहां पर--

यहां पर कि एक अह सब्जी की दुकान है जहा पर कुछ लोग बैठे सब्जी खरीद रहे है और कुछ लोग सब्जी बेच रहे है।

कई तरीके की और सब्जियां और फल फ्रूट भी रखे गए हैं जो की बहुत बढ़िया लग रहे हैं।

अ बैठे हैं और साथ में ही कुछ लोग बाहर दुकान लगा के बैठे हैं।

उसके साथ ये एक पूल बना हुआ है जोकि एक स्विमिंग पूल भी--

अं पेहले ही रंगोली बनाई गई है जो की बहोत ही अच्छे तरीके से तैयार की गई है स्कूल की एक--

और नीचे कुछ लोग बैठे है जोकि उनका गाना सुन रहे है।

दरवाजा भी लगा हुआ है पर्दे के पीछे एक--

ये एक एच_डी_एफ_सी बैंक के ए_टी_एम के बाहर की तस्वीर है यहां पर बहुत सारे लोग बाहर पैसे कड़वाने के लिए खड़े हैं।

उसके पीछे कुछ पांच-छे व्यक्ति और खड़े हैं।

गराज बनाया गया है जिसमें की--